और हरी रंग की एक लाईन जैसी लगी हुई है और आप देख सकते है बाकि साइडों में जो तुलसी का पेड़ है इसे बहुत ही शुभ माना जाता है पौधा है छोटा सा।

मैं इस पिक्चर को भी बहोत अच्छे ढंग से देख लीजिए आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में कुछ सुधा पार्लर जैसा लिखा--

आप न इस पिक्चर को बहोत ही अच्छे ढंग से देख लीजिए आप इसे देख सकते हैं ये बहोत ही सुंदर लग रही है और मैं इस पिक्चर को ना--

इस पिक्चर को भी ना आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख लीजिए आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में साड़ियां ही साड़ियां दिख रही है और बच्चों के कपड़े--

यहां पर जो ये बाइक है ये भी बहुत ही अच्छी लग रही है ये बाइक मुझे--

देख सकते है की ये मेला ना बहोत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि यहां पर ना अ यहां पर औरते कुछ खरीद रही है और बिट्टू की पीछे दिखाई दे रहा है और साथ--

क्योंकि मैं मुझे ये पिक्चर न बहोत ही पसंद आ गई है और साथ में यही से--

जीस यहां पे इस ढाबे मे जा सकते हैं और अंदर देख सकते हैं कि यहां पे ना बहोत चीजें खाने के लिए बनाई गई होनी और तेबुल भी सुनन दिखाई दे रहे है और बहोत ही अच्छी लगरे।

आपलोग न इस पिक्चर को बहोत ही अच्छी ढंग से देख लीजिए ये पिक्चर न मुझे बहोत ही अच्छी लग री है क्योंकि इस पिक्चर में न एक आग जलाई हुई है और आग जलाते समय--

कि यहां पर ना एक लाइट जैसी दिखाई दे रही है और साथ में आप देख सकते हैं कि यहां पर एक बल्ब जैसा दिखाई दे रहा है और बल्ब के साथ में ही ना रोशनी जैसी आ रही है और आप देख सकते हैं कि यहां--

जो यहां पर ये पिक्चर दिख रही है ना आप दे सकते हैं इस पिक्चर में एक बड़ी सी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के सामने ना बहोत सारी--

बना खाने पीने का सामान भी बाहर दिख रहा है।